और इस बग्गी के अगल बगल कई सारे लोग चल रहे है इधर कई सारे डी.जे. वगैरह भी बज रहे है।

बगल में कई सारे लोग --

और इस घर के अगल-बगल बीम भी भर रही है और एक व्यक्ति बॉल अपने हाथ में पानी की बॉल भी चला रहा है। बगल में एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

और इनके अगल-बगल जो लोग पेड़-पोधे भी लगा रहे हैं और कई सारे लोग --

और व्यक्ति के बगल में कई सारे लोग भी खड़े हुए हैं।